ट्रक भी लगा हुआ है। बोहोत बहुत सारी दुकाने हैं। हरे भरे पेड़ हैं।

यह एक चर्च की फोटो है। चर्च के ब बाजू में ही मोबाइल का टावर दिख रहा है। आजू-बाजू में बिल्डिंगे दिख रही है। हरे लाल नीले --

यह एक किले का फोटो दिख रहा है। किले के ऊपर भी बहोत सारी पेड़ पौधे उग कर आए हैं। नीचे बहोत सारी हरियाली दिख रही है।

यह एक मेहंदी अ फॉर्म है जिसका गेट लाल कलर का है। ऊपर सफेद कलर के अ राउन्ड किए गए हैं।

का रंग का सफेद है। आजु बाजू मे हरियाली दिख रही है और अ अ म अंदर भी पेड़ है और बाहर भी पेड़ है।

बिल्डिंग का कलर सफेद हरा और नीला दिख रहा है। मोटरसाइकिल दिख रही है। यहाँ पर बहोत सारे ट्रक दिख रहे हैं। फोरव्हीलर दिख रही है।

इसके ऊपर लोग चल रहे हैं तो कुछ लोग बैठे हुए हैं। ब्रिज का कलर नीला है जो चल रहा है इंसान उसका कलर अं --

और यहाँ पे बाजू में ही थोड़ा पानी भी दिख रा है।

यह एक प्लेग्राउंड है जिस पर बच्चे लोग दौड़ कर रहे हैं बच्चे लोगों ने पीले और ग्रे कलर के ट्रैक --

पहना है एक बच्चे ने ब्लैक और ब्लैक कलर का पेंट पहना है। बच्चे लोगों ने शूज पहने है। आजू-बाजू में हरियाली दिख रही है।

यह एक साइबर कैफे दिख रहा है जिस पर एक दो तीन चार पांच ऐसे डेस्कटॉप कंप्यूटर दिख रहें हैं।

यहाँ एक वाणिजय कर मुख्य द्वार है यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है बहुत सारे पेड़ पौधे दिख --

तड़े पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधों को अच्छी तरह से काटा गया है और आजू-बाजू में डिवाइडर लगे हुए हैं और डिवाइडर पीली और हरे रंग का दिया गया है।

यहाँ पर एक लाल कलर का मका मक़बरा दिख रहा है आजु बाजू में पेड़ पौधे दिख रहे है।

यहाँ एक रोड की फोटो है रोड के ऊपर स मोटरसाइकिले ऑटो अ बाइसिकल लोग ऐसे सब चल्ग रहे है।

बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं। डिवाइडर दिख रहा है। आजू बाजू में मकानें दिख रही है और बहोत सारे पेड़ पौधे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं।

आय यह दो आदमी खड़े रहकर इन्क्वारी काउंटर के पास बैठे हुए हैं। पोस्टर दिख रहा है आदमी लोगों ने एक ने व्हाइट एक ने व्हाइट कलर का शर्ट --

यह एक मछली की दुकान दिख रही है वो एक औरत मछली बेक रही है जिसमे नीले कलर का --

यहां एक अअ रोड दिख रहा है। रोड के बाजू में डिपो दिख रहा है। रोड के ऊपर अ दो तीन लग्जरी गाड़ी दिख रही है। जि --

यह ऊपर जाने के लिए सीडिया है वही सीडिया निच्चे भी आती है और प आजू-बाजू पे बहोत सारे पेड़-पौधे दिख रहे है।